बिल्डिंग के बाहर मुझे बौंडरी दिख रही है और कुछ लड़के और लड़कियां चलते हुए नजर आ रहे हैं।

इसके अंदर बहोत सारे बॉटल रखी हुई है यहां पे मुझे कुछ टेबल और कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक घड़ी भी लगी हुई है और इसके साथ एक बहुत बड़ा पिलर है।

ये यहां चारों तरफ बाउंड्री बनी हुए है जिसमें लोहे के ग्रिल्स लगी है।

जहां पे मुझे दो दरवाजे नज़र आ रहे हैं और एक बड़ी सी खिड़की नज़र आ रही है। जो शीशे की बनी हुई हैं।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

यहां पे कुछ गाड़ियां चल रही हैं। आस पास मुझे हरे भरे पेड़ और झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं और बहोत सारी बिल्डिंगस भी नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में मुझे एक अ जगह दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारे हरे भरे क्यारियां और फूल लगी हुई है।

ये एक गुरुद्वारा है गुरुद्वारा का कलर है।

चर्च के अंदर मुझे जीसस क्राइस्ट की मूर्ति क्रॉस पे नजर आ रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे एक बाग नजर आ रहा है।

और कुछ लोग अस्टेज से उतर के साइड में जा रहे हैं यहां पे मुझे स्टेज दिख रही है जिसके साइड में रेलिंग बनी हुई है।